व्हाइट कलर की बेड शीट लगी हुई है और पिलो रखे हुए हैं।

कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं सामने एक मिरर भी लगा हुआ है।

मैं यहाँ एक ब्यूटी पार्लर के अंदर हूं और मैं देख रही हूं ब्यूटी पार्लर में एक चेयर पड़ी हुई है ।

एक ठेले पे बड़ी सी मछली दिखाई दे रही हैं ।

मैं यहाँ इको कॉफी शॉप में बैठी हुई हूँ और लेकिन ये गैस पड़ी है बेंच के ऊपर एक--

गद्दा नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और एक मेट भी पड़ी दिखाई दे रही है ।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

एक बच्चे भी दिखाई दे रही है एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है।

मैं यहां एक बीच पे हूं और मैं देख रही हूं बीच पे मुझे--